यह एक मार्केट का फोटो है इस फोटो में यहां पर लोग भीड़ है काफी भीड़ है उसके पासा ठेले लगे हुए है।

यहा अभी अभी ओपनिग हुई है जो की दुकान सजी हुई है पुरी दुकान के बहार गेट लगा हुआ है साथ ही ऊपर दुकान का नाम लिखा हुआ है और दो कलाकृतियां बनी हुई है और साथ में कुछ लोग अंदर की और घूम रहे है।

और एक आदमी दुसरे आदमी के टेस्ट कर रहा है उसे पास एक बोतल पड़ी हुई है बैग भी रखा हुआ है।

यह एक चर्च है उस चर्च के दिवाल पर एक क्रोस का साइन है उसके सामने कुछ लोग है उसके अंदर बहुत सरे लोग है कुछ लोग मोमबत्तियां जला रहे है चर्च ऊपर एक लाइट लगी हुई है ।

मार्केट का फोटो है इनमे कुछ गाड़ी दिख रही है गाड़िया के ऊपर एक बैग रखा हुआ है एक ठेला दिख रहा हैफल लगे हुए है। फल--

यह एक चार पांच चार मंजिले इमारत है यहं एक बहुत सा बहुत अपार्टमेंट बने हुए है साथी हर अपार्टमेंट में एक बालकनी दी गई है और उसके आस पास कुछ पेड़ पौधे दिए गए है पेड़ पौधे भी है।

यह मोल टाईप फायर है।

मंडी का भेज रह है एक आदमी है जो मास्क पहने हुए है शायद उसकी पास में बहुत सारे फल है संतरा है आ और खीरा है ककड़ी है और बहुत सारे फल है।